और नदी में तीन औरतें खड़ी हुई है एक नाव खड़ी है किनारे प --

यहाँ पर लाल गुलाबी नीला हरा फ्लावर पौ --